आजु बाजु हमें एक कंपाउंड की दीवार दिखाई दे रही है जो कि लाल और सफ़ेद रंग की है साथ ही साथ हमें यहाँ पर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जो कि बहोत दूर-दूर तक फैले हुए नज़र आ रहे है जो के देखने में बहोत अच्छे लग रहे है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है जो कि बहोत दूर-दूर तक बैठी हुई नज़र आ रही है और हमें यहाँ पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो कि कुर्सी में बैठे नज़र आ रहे--

बहोत सारे लोगो की डीन दिखाई दे रही हैं और हमे यहाँ पर बहोत सारी बोतले दिखाई दे रही हैं और हमें यहाँ पर बहोत सारी गाड़िया खड़ी नज़र आ रही हैं जो कि बाइक दिख रही हैं।

कैमरा मे हमे बहुत सारी कटोरी दिखाई दे रही हैं और हमे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा हैं उसके हाथ मे हमे एक बैग दिखाई दे रहा हैं।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

यहाँ पर बहोत ही बड़ी दुकान दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर दीवार के ऊपर हमें एक मग्घा बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारा जूस दिखाई दे रहा है और उसमें हमे एक काले कलर का बोर्ड भी लगा हुआ नज़र आ रहा है।

टेबल के ऊपर हमें बहुत सारे रुमाल रखे हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे कॉफी के कप रखे हुए नजर आ रहे हैं कॉफी का कप यहाँ पर हमें सफेद कलर का दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉफी पीते हुए

कप का कलर हमें सफेद दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमें बहोत सारी कॉफी रखी हुई दिखाई दे रही है जो कि हमें देखने में कत्थई और काफी टेस्टी लग आ रही है।

और उसके ऊपर हमें बहोत सारे पा ई अ लटके हुए दिखाई दे रही है जो कि खाने चिप्प विप्स है और हमें बहोत सारी छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है छोटी सी दुकान के अंदर हमें बहोत सारे अंडे के ट्रे दिखाई दे रहे है।